बोहोत सारे नांव हैं कैसा सुंन्दर दिख रहा है देखिये पानी भी चमक रहा है सूरज भी चमक रहा है। लोग भी खुशी से नहा रहें हैं।

ये भी एक क्या है भीड़-भाड़ की जगह में लोग अच्छे से मतलब क्या कुछ भी हो तो वो लोग देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नही।